बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पे ऊपर दो तार की फोटोज़ हैं वेयरिंग है ग्राउंड है विंडोज़ हैं।

बहुत सारी ले बच्चे हैं स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल में अंदर जा रहे हैं।

सबने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और स्वेटर्स पहने हुए हैं शूज सॉक्स पहने हुए हैं ब्लैक कलर के।

सबने बैग डाला हुआ है पॉनिटर बंधे हुए हैं कुछ सर भी है कुछ पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं।

रखे हुए हैं यहां पर एक चेयर है इधर बॉक्स में भी बहुत सारे कपड़े हैं वैराइटीज हैं डिजाइन हैं।

यहां पर भी कार है ब्लैक कलर की स्काई है एंड ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर्स लिखे स्काई दिख रहा है।

उम्म इधर भी व्हाईट कलर की कार है अह इधर भी आदमी लोग बैठे हैं व्हाईट कार है।

ऊपर रेड येलो ब्लैक कलर के कुछ बल्ब लगे हुए हैं साइड में--

पेड़े है अलग अलग वैरायटी में है इधर भी चार हैं इधर भी मिठाई हैं।

थैलों में अनाज है। एंड ऊपर घड़ी है। बड़ा बल्ब है ऊपर यहाँ एक आदमी --

साइड में स्काई साइड में बहुत बड़ा गार्डन है जहां पर तरह तरह के फूल हैं।

खड़े हैं यहां पर प्लांट है बहोत बड़ा सा प्लांट है छोटे प्लांट से--

यहां पर बहुत सारे बुक्स है। ऊपर बल्ब है। स्टार में डिजाइन बनाया गया है।

एक बंडी है बंडे में कुछ सामान है एक आदमी है साइड में भी एक साइकिल है।

दूर बहुत सारे वायरिंग हैं स्काई है प्लांट है बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं थोड़े प्लांट्स हैं।

पानी भी है अच्छा पानी व्हाईट कलर में एंड फिश भी दिख रहे हैं इसमें बहुत सारे।

एक बेड है जहां पर पिलो रखे हुए हैं व्हाइट कलर के एंड रेड कलर के कुश कुशन हैं।

ऊपर साइकल मूरत लिखा हुआ है स्काई है आसमान पे प्लांट है।